एक कुर्सी दिखाई दे रही है बाल्टी रखी हुई है।

फोन रखा हुआ दिखाई दे रहा है एक कंघा रखा हुआ है।

बहुत बड़ी डेक्स रखी हुई है फोन रखा हुआ है नीचे मैट पड़ा हुआ है।

लाइट का बोर्ड दिखाई दे रहा है पंखा दिखाई दे रहा है।

पेड़ है लोहे का गेट है आदमी दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे बल्ब दिखाई दे रहे हैं। बहोत सारी कुर्सी दिखाई दे रही है।

बाल्टी दिखाई दे रही है फायर ब्रिगेड दिखाई दे रहा है।